और तीन लोग बैठे हैं कुछ लोग हाथ में पर्ची लेकर खड़े हैं।

मिलते हैं कई तरह के पेड़ पौधे यहां मिलते हैं तो यह वही का एक फोटो दिख रहा है जिसमें--

पुरानी सरकारी अ बिल्डिंग जैसी इमारत जैसी लग रही है।

हल्के ऑफ वाइट कलर के शर्ट और ब्लैक कलर के पैंट में खड़ा नजर आ रहा है।

ये एक अ क्रिस्चियन समुदाय लोगों का कुछ अ जश्न कुछ सेलिब्रेशन का कुछ ऐसा लग रहा है या कुछ ओकेजन है।

और जो औरतें हैं सब सर आधे सर सब सर ढक के बैठी हुई हैं।

अ फ्रंट टेबल में बैठी है सफेद रंग का टेबल है एक छोटा सा चेयर है।

और दो फायर इक्स्टिंगग्विशर सामने रखे हुए हैं सेफ्टी के लिए--

अ रखी हुई हैजो ज्वेलरीज है सामने एक लैपटॉप दिख रहा है।